मुझे इस फोटो में बहोत सारी दवाइयां दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में रेलवे की पटरिया दिखाई दे रही है।